इस पिक्चर शायद हमे एक जू का अन्दर का फोटो दिखाया गया है जहां हमें एक बहुत बड़ा मगरमच्छ दिखाई दे रहा है जो लेट के है।

बिल्डिंग के दूसरे ओर हमें बहुत सारे पेड़ पौधे दिखाई देने

दीवार के दोनों साइड खुला हुआ है जिसमें परदा लगाया हुआ है सफेद रंग के।

बहुत ही लाइनिंग रूम है।

और सभी लड़के व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए और लड़की रेड कलर की साड़ी पहनी हुई है।

सामने बड़े एक पेड़ दिखाई देने मिल रहे हैं पीछे बगल भी हमें बहुत सारे पेड़ दिखाई देने मिल रहे हैं।

मछली रखने वाला थर्मोकोल बॉक्स दिखाई पर रहें हैं काफ़ी सारे।

फिर पानी का कलर भी हमें हरा दिखाई देने मिल रहा है।

बहुत सारे फैन भी दिखाई देने को मिल रहे है।

बहुत सारे आदमी दिखाई देने मिल रहे हैं सभी मिलकर काम कर रही है।

एक गारी भी है दो पेर बड़े बड़े पेर है एक गेत गेट भी दिखाई पड़ रहा है।

बहुत सारे लाइट्स दिखाई दे रहे हैं।

उनके पीछे सायद कुछ बंबू दिखाई पर रहे हैं बरे बरे पहारे हैं।

बहोत सारी खिड़कियां भी नजर आ आ रही है और बहुत सारे दरवाजे भी नजर आ रहे है सभी के।

अ बादल से भरे परे है आसमान जो।

पीछे बहोत सारे हेलमेट दिखाई दे रहे हैं कुछ कुछ सामान दिखाई दे रहे हैं ड्रावर पर रखा हुआ।

जो प्रिव्यू भी दिखाई देने मिल रहा है सब्जी के अलावा भी बहुत सारे कुछ दिखाई देने मिल रहे हैं पीछे साइड को हमें।

के साइड मे कुछ इत्ते रखे हुए दिखाई पड़ रहे हैं जिसके सामने में एक जानवर भी दिखाई पड़ रहे हैं।

इस पिक्चर में शायद हमें एक जिम टाइप का पार्क दिखाया गया है जहां हमें बैनर पे लिखा हुआ है ओपन जिम कर के।

हां एक ठो बिल्डिंग दिखाई दे मिल रहा है बिल्डिंग का आधा हिस्सा जो।

इस पिक्चर पर हमें टेबल में बहुत सारे खाने की चीजें रखा गया दिखाई पड़ रहे है।

बहुत सारे आदमी लोग दिखाई देने मिल रहे हैं और इस जगह को इस रूम को बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया है।

बहुत सारे बैलूने दिखाई देने मिल रहा है वॉल्स पर गरिया दिखाई देने मिल रहा है लाइट्स जल रहे हैं।

फ्लोर पर टाइल्स बिछाया गया है और उस टाइल्स पर बहोत छाया दिखाई देने मिल रहा है।

सामने टायर्स दिखाई देने मिल रहे बाइक के।

इस पिक्चर में हमें बहुत बड़ा समुंदर दिखाई दे रहे हैं।